रास्ते में एक बड़ा सा खंभा नज़र आ रहा है दूर की तरफ बहुत सारे पेड़ उगे हुए दिखाई दे रहे है और एक बड़ा सा ट्रेन का डब्बा --

उसके साइड में बहोत सारा फ्लावर्स पे सजाया गया है बुके लगाकर रेड व्हाइट येलो कलर का बुके लगाया गया है।

अ छह सात मछली है एक थाली पे इकट्ठा होके रखे हुए है थाली जो --

ये फोटो दिन के समय का है। आकाश पूरा नीला और साफ है।

ये फोटो रात के टाइम का है और ये फोटो जो है वो दुकान के बाहर वाला फोटो है।

छन रही है बहुत सारे चलपी आए है एक जगह पे इकट्ठे हुए रखा गया है।

और एक्ख काम का लोक है वो खड़े हुआ है और साइड में एक ग्राहक जो है वह बैठा हुआ है एक टेबल--

बरसाना का जो आगे का डिजाइन हुआ है वो ग्लास में डिजाइन हुआ है।

हमारा फ्रन्ट जो है वो पूरा ओपन है वहाँ पे एक छोटू सा बोर्ड ली लगा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है ॐ सी पालकी स्थल ।

जिम के अंदर बहुत सारे ट्रेडमिल्स पड़ा हुआ नज़र आ रहा है एक --

चार्ट शीट पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

और इस शॉप में बहुत सारा मेडिसन जो है वो ऑर्गनाइस करके रखा गया है --